एक व्यक्ति खड़ा हुआ है बनियान पहरे--

पीछे मंदिर है छोटा सा।

एक मेज धरी हुई है उस पर कंप्यूटर धरा हुआ है।

व्यक्ति ग्रिल के उस पार बैठे हुए हैं।

एक लोहे के पाइप पर लाइट लगी हुई है।

पिला मकान हैं मकान की खिड़कियों पर शीशे लगे हुए है।

एक तिरंगा खड़ा हुआ है सफेद रंग का पाइप है।

ये अच्छे बहुत सारे पौधे बराबर में धरे हैं।

बहुत सारे गाटर धरे हुए हैं लोहे के।

बहुत बड़े बड़े पीछे पेड़ भी है।

गेट पर ऊपर नीचे और डिजाइन कढ़े हुए हैं।

और एक पंछी उड़ रहा है आसमान में।

मीले पर भी एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

चार कुर्सी धरी हुई है एक मेज धरी हुई है।

कोने में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ब्लैक कपडे पेहरे हुए सिर पर टोपी है।

ए_सी लगी हुई है दीवार पर।

एक आयशर ट्रैक्टर पर पीली माला चढ़ी हुई है।

एक बाइक पर व्यक्ति हेलमेट लिए है।

एक पिंक कलर का मकान है मकान पर जंगले लगे हुए हैं।

एक दीवाल के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है बराबर में।

जिन्स व पुट सट में एक साइकिल खड़ी हुई है ब्लैक कलर की।

एक व्यक्ति पिंक पहन रहा है।

माता का एक पोस्टर लगा हुआ है मंदिर पर।

ऊपर ले डबल बैनर लगे हुए हैं नीले कलर के

स्लेप बनी हुई है कंच की छोटी छोटी--

ग्रिल लगी हुई है लोहे की जीने पर।

टेबिल पर एक कंप्यूटर बंद है एक कंप्यूटर चल रहा है।

बराबर में धरे हुए हैं छोटे छोटे पीले पीले--

दो बेड पड़े हुए हैं बेड पर नीले गद्दे रखे हुए है।

एक औरत पड़ी हुई है नीले गद्दे पर।

ऊपर स्टील की चादर लगी हुई है कंपनी पर।

नीचे रंग बिरंगे गमले धरे हुए हैं।

सबसे आगे अलमारी में घुंघरू टंगी हुए हैं।

एक अलमारी के अंदर दो ढोलक धरी हुई है।

जाल दिख रहा है लोहे का गेट --

एक आदमी के हाथ में हरे कलर की टोकरी है प्लास्टिक की।

शीशे में एक लड़का पीली टी शर्ट में मोबाइल ले रहा है।

मूर्तियों के चारों ओर नीले कलर की बाउंड्री हुई है।

ग्रिल लगी हुई है लोहे की वाइट कलर की बहुत लंबी।